इस फोटो में बाहर में बहुत सारी --

लगा हुआ है --

इस मंदिर का दीवाल बाहर से सफेद रंग का है ।

वहाँ हैं जहाँ यहाँ एक मैदान हैनीचे इसके अंदर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ।

एक ऑटो भी है ।

यह एक रोड का फोटो है ।

आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

दुकान के अंदर एक लड़का खड़ा है ।

यह एक खेत का फोटो है ।